सामने की ओर दीवार भी है जो की सफेद रंग की है और उसमें ग्रे कलर की सजावट भी की गई है।

दीवार के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े हरे रंग के पेड़ भी है।

तक धुंध फैला हुआ है और धुंध में कुछ पेड़ और कुछ इमारत नजर आ रही है।

और बहोत सारे हरे हरे पेड़ भी दिख रहे हैं।

दूसरे बोट पर दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं।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

गेट काले रंग का है और उसके सामने एक लाल और सफेद कलर से एक घेरा भी बनाया हुआ है।

केले के पत्ते के ऊपर रखा हुआ है जो की एक प्लेट में दिया गया है।

सारे कार्टून में कुछ कुछ सामान भी भरा हुआ है।

मकान के गेट का रंग सफेद है।

और वहां पर एक कार भी खड़ी हुई नजर आ रही है।